यहाँ दो मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है यह नीचे क्यारियां बनी हुई हैं जिनमे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ कुछ जमी हुई है बहुत सारी जगह पड़ी हुई है।

इमेज में दो खिड़कियां लगी बोर्ड जैसी दिखाई दे रही हैं साइड में एक ब्लू बोर्ड दिखाई दे रहा है। दो पंखे दिखाई दे रहे हैं टाइल्स लगी हुई --

यहाँ खिड़कियां लगी दिखाई दे रही हैं। नीचे टाइल्स आधी दीवालों में टाइल्स लगी दिखाई दे रही --

इमेज में बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं जो आमने-सामने बैठे हुए कुर्सियों पर लड़के-लड़कियां दिखाई दे रही हैं। ल --

रोड लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है| एक अंदर जाते हुए एक छोटा सा जिसके सामने रोड दिखाई पक्का दिखाई दे रहा खंभा लगे हुए दिखा --

पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है। यह सब सिस्टम अलग-अलग जमा हुए बाउंड्री दिखाई दे रही है ममी ले --